यहां पर बहुत सारी दुकान है और यहां पर एक दो आदमी खड़े हुए हैं यहां पर सामने ही साइकिल और स्कूटी और गाड़ी खड़ी हुई है।

यह एक होटल है होटल के अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

और नीचली साइड फर्श हो रहा है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारी स्कूटी है।

यह एक ए_सी की दुकान है इसमें बहुत सारी ए_सी रखी हुई है।

पर एक शादी फंक्शन है। यहां एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि इसने ब्लैक कलर का कोट पहना है और गले में टाई बांध रखी है जो कि ब्लैक कलर की है।

क्योंकि यह आदमी इन ब च्चों को बता रहा है।

यह एक ब्यूटीफुल कैमरा है।

और एक एक ए_सी लगी हुई है और इनके बीच में एक डबल बेड है।

यहां पर एक तार पड़ा हुआ है पास में ही एक और तार पड़ा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारी किताब रखी हुई है और यहां पर सामने ही एक कुर्सी रखी हुई है।

सामने ही बहुत सारी पैकिंग में डब्बे रखे हुए हैं। यहां पर पास में ही गाड़ी है और यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

यह एक हॉस्पिटल का कमरा है कमरे के अंदर एक बेड विछा हुआ है।

यहां पर एक कुर्सी भी रखी हुई है।